नीचे धूल डली हुई है मिट्टी डाली हुई है यहां--

ब्लैक कलर का लोअर पहना हुआ हैइसके हाथ में जी--

उसकी खिड़कियां बनी हुयी है बहार --

नीचे टाइल्स लगे है फटी रखी हुई है ।

इनके ऊपर चट्टानें रखी हुई है एक लड़के का जूता दिख--

बहुत सारे अ लेडीसे खड़ी हुई है।

लाल कलर में दिखाई दे रहा पेड़ लगा है लाइट के तार दिखाई --